हॉल के बाहर कुछ गाड़ियां खरा होके है।

घर का पीछे साइड में कुछ का पेड़ और पपाया का पेड़ दिखाई दे रहा है।

ये एक घर का फोटो है।

और इस बिस्तर का कुछ पार्ट्स तोकता निकाल के साइड में वॉल में रखा गया है।

और साइड की पोस्ट में लिखा गया है वेलकम ।

टेबल का सामने दो चेयर है।

यह एक कच्चा घर का फोटो है।

और दोनों कच्चा घर का पिलर्स सब सीमेंट पैक है और दोनों में सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रहा है।

और इसका पीछे में बड़ा सा वरशिप टेंपल है।

पीछे वाला सिर्फ उसका माथा दिखाई दे रहा है इस तब देखते हुए--

जिसमे चेन लगाया है बंद करने के लिए और गेट में लिखा है प्रवेश निषेध।

ये एक ब्रिज का फोटो है जिसका नीचे में एक बड़ा सा पानी नदी बह रहा है।

और बीच के सामने दो गाड़ी खराब हो रहा है एकदम पर।

ये एक चप्पल और जूता का शॉप है जिसका शॉप का ऊपर में लिखा गया है बाटा ।

और चर्च को एक लोहा का फेंसिंग से बान बाउंड्री किया गया है।

ये एक रूम का फोटो है जिसमें दो बिस्तर दिखाई दे रहा है।

और इस रूम के सारे अलमारिज बंद हैं।

एक घर का फोटो है जिसका बाहर में बहोत सारे फ्लावर पॉट्स रखा गया है।

ए एक शॉप का फोटो है। शॉप के बाहर में कुछ दिए जले हुए हैं। एक डस्टबिन है।

यह एक पार्क है और इसमें लोहा से बना हुआ बहोत सारा खेलने के लिए इक्विपमेंट्स --

और पार्क के अंदर दो पेड़ दिखाई दे रहा है बड़ा बड़ा और--

सामान जैसे कैरम बोर्ड दिखाई दे रहा है और सामने में खिलौने जैसे बैट बॉल --